यहाँ पे एक बहुत बड़ी दुकान नज़र आ रही है उसके ऊपर रेड कलर का बोहत बड़ा बैनर लगाया हुआ है।

वहा पे कुछ शीशे लगाए हुवे हैदूर कुछ पेड़ नजर आ रहे है कुछ ट्रक नजर आ रहे है कुछ बस दिखाई दे रहा है बाजु मे एक छोटे सा पोल दिखाई दे।

यहा पे एक बहुत बडा हॉल दिखाई दे रहा है जहा पे कुछ टू व्हीलर दिखाई दे रही है ऊपर कुछ येलो कलर और व्हाइट कलर के कर्टेन दिखाई दे रहे है।

यहां पे एक कंपनी जैसा दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहुत बड़ी मशीनरी लगी हुई है जिसमे कुछ पाइप्स लगे है।

ये दो तीन लड़किया बाजुमे खड़ी हुई है पीछे बोहोत सारे पेड़ है एक बिल्डिंग है एक बडा सा पोल है एक फोर व्हीलर खड़ी दिखाई दे रही है कुछ बैनर लगे हुवे दिखाई दे रहे है ।

एक नदी पे पुल बनाया हुवा है जो की रास्ते का काम कर रहा है| बाजु मे उसकी बोहोत सारी सलाखे दिखाई दे रही है ।

एक काउन्टर टेबल दिखाई दे रहा है जिसमे वाटर बोटल रखी हुई है कुछ कितबे रखी हुई हैएक लैपटॉप रखा हुवा है।

मूह पे मास्क है ब्लू कलर के कपड़े पहेने है| पीछे व्हाइट कलर की दीवाल है अच्छा सा फ्लोर हे उसने जूते पहने है ।

यहा पे एक बोहोत बडा हॉल दिखाई दे रह है| उसके बाजुमे एक काउन्टर बनाया हुवा है उसके अंदर एक आदमी खड़ा है ।

बाजुमे दो आदमी खड़े हुवे है नीचे कुछ सीढ़िया दिख रही है| उन आदमीयो ने व्हाइट कलर का शर्ट और ब्राउन कलर का पैन्ट पेहेना हुवा है| चप्पल पहनी हुई है ।

यहां पे दो मजली मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमे गेरुए कलर का कलर किया हुवा है ऊपर कुछ झंडे भी दिखाई दे रहे है ।

यहाँ पे एक रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ पे चौक जैसा कुछ दिखारे दे रहा है वहाँ पे एक मूर्ति लगाई हुई है उसको कटघर बनाया हुवा है पीछे कुछ पेर दिखाई दे रहे है ।

यहा पे रास्ता दिखाई दे रहा है| रास्ते के बाजुमे कुछ पेड़ और घास दिखाई दे रही है रास्ते के बाजुमे एक मंदिर बनाया हुवा है ।

इसी हॉल मे एक छोटी शी दुकान बनाई हुई है ऊपर सीलिंग पे कुछ लाइट्स लगे हुए है उस दुकान के अंदर कुछ आदमी बैठे हुवे है ।

कॉर्नर मे दो बॅग रखी हुई है और एक दीवान दिखाई दे रहा है जिसमे दो पिलो रखे है दो बँकेट्स रखे है उसपे बेडशीट बिछाई हुई है नीचे फ्लोर दिखाई दे रहा है।

रास्ता दिखाई दे रहा है। जहा पे कुछ आटो खड़ा है। उसके आगे कुछ इंसान खड़े है। कुछ लड़के बॅग लेके खड़े है।

उस दुकान के ऊपर कुछ व्हाइट कलर मे लिखा हुवा है| रेड कलर भी दिख रहा है कुछ बैनर लगे हुवे है दूर दुकान जैसे छोटे छोटे दिख रहे है।

दिखाई दे रही है जिसमे दो चेयर है उसमे दो लोग बैठे है एक लड़की और एक आदमी एक लड़की उ कुछ सूटकेस मे से उस आदमी को दे रही है।

उसमे दो लड़के और दो लड़किया खड़ी हुई है जो डांस की पोजीशन दे रही है पीछे एक बोहोत बडा बैनर लगाया हुवा है| उसके पीछे एक पोल है उसमे लाइट लगे हुवे है ।

यहाँ पे कुछ पोल खड़े है उसमे बोहोत सारे कलर कलर के झंडे लगाए हुवे है ऊपर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है ।